तो पर्सन खड़े हुए दिख रहे हैं और आसपास में यहां पर कुछ सीढ़ियां दिख रही है पर्पल कलर का मैट रखा हुआ दिख रहा है यहाँ कुछ कलर दिख रहे है अलग- अलग कलर में--

व्हाइट कलर के दिख रहे हैं कुछ रेड कलर में दिख रहे हैं कुछ पिंक कलर के दिख रहे हैं और यहां पर कुछ परदे लगे हुए देख रहे हैं अलग-अलग कलर में छ ऑरेंज डॉट कलर में दिख रहे हैं कोइ पर्सन यहाँ पर ब्लैक कलर की टीशर्ट पहनी हुई दिख रही हैं।

दिख रहा है बिल्डिंग के सामने जस्ट गणेश जी की प्रतिमाएं रखी हुई दिख रही है टेबल के ऊपर पर्दा लगा हुआ दिख रहा है नीचे में जो पिंक कलर का दिख रहा है और आसपास में दीवार का पेंटिंग कलर जो है वह वाइट कलर में दिख रहा है काफी सारे कांच लगे हुए बिल्डिंग में--

कुछ व्हाइट कलर मे दिख रहा है कुछ ब्लैक कलर के दिख रहा है और-र कुछ व्हाइट कलर का प्रस कर रहा है। और नीचे मेट विछा हूआ व्हाइट कलर का और आसपास में दीवार का पेंटिंग कलर ईयोलो --